जैसे की टी शर्ट्स जैकेट्स और लॉन्ग पैंट्स ।

बड़े बड़े पेड़ भी हैं और एक साथ भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

खिड़की भी है जिनमे पर पर्दे लगाए हुए हैं।

सामने में एक घर भी है।

सामने में एक फैन भी रखा हुआ है।

सोफा सीट्स के ऊपर पिलोज भी रखे हुए हैं।

ए_सी भी है घड़ी भी लटकाया हुआ है।

ब्लू रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

ऊपर में ट्यूबलाइट्स भी लगाया हुआ है।

इसमें कई सारे इंसान भी दिखाई दे रहे हैं।

आधे लोगों का शक्ल बलर् किया हुआ है।

कृष्ण ने उसके हाथ में एक बांसुरी पकड़ा हुआ है।

कृष्णा के साथ राधा भी दिखाई दे रहा है।

इसे परडा लगाया हुआ है।